जो की बगल में अनेकों प्रकार के फूल भी लगे हुए हैं और देखने में बहुत ही अच्छे लगते--

जो कि हवाई जहाज से एरोप्लेन से कहीं जाएँगे।

ये दो तल्ले में उपस्थित है।

जो की बगल मे स्टार्टिंग में रोड सोलिंग का है और आगे जा के मंदिर है।

कोई लाल है तो कोई हरा है कोई थोड़ा हरा है तो कोई पूरा हरा है।

और इसमे एक सवलिया भी पीछे खड़ा है।

जो की काफ़ी पुरानी लग रही है और इसमें बहुत सारे मल्टी कलरस भी हैं।

जो की अनेकों कलर में हैं।

जानून पक्षी भी नजर आ रहा है।

और उसके पीछे देखे तो हरियाली है।